सामने में वाइट कलर का एक गाड़ी भी खड़ा किया हुआ है।

ऊपर की फ्लोर में बहुत सारा बैलून लगाया हुआ है।

दुकान के अंदर दो स्टैचू भी लगाया हुआ है।

एक चेयर भी रखे हुए हैं।

यह फोटो में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

एक घोड़ा भी रखा हुआ है बीच में।

वॉल का कलर रेड और ग्रीन में है।

बहुत सारा बास भी रखा हुआ हैं।

ऊपर का कोना एक खाली है।

बंबू बहुत सारा है वो छत को सपोर्ट कर रहा है।